पट्टी-पुती हुई है और निचे--

अ ग्रे क्लोर की है और निचे ग्राउंड है जिसपे बहोत से पेड़े लगे हुए है।

ए साल के सड़क है जिसपे लेकिन वही टाइल्स और बिच में लाल टाइल्स लगे हुए है और एक--

इसमें सफेद अक्षर से भारतीय सेंट्रल ग्राफ सेवा केंद्र--